शेहनाई दिलरुबा आद एक पीछे सुंदर सा ढोलक भी रखा हुआ हैं।

इस तस्वीर में एक आदमी दूसरे आदमी के पैर पर मालिश कर उसको एक्सरसाइज कराने का कार्य कर रहा है।

जैसे गोभी पत्ता गोभी गाजर टमाटर आद अनेक प्रकार की सब्जियां है।